मेरे प्यारे देशवासियो आप सबको नमस्कार
गत वर्ष हमने गर्मी की भयंकर पीड़ा पानी का अभाव सूखे की स्थिति न जाने कितनीकितनी कसौटियों से गुजरना पड़ा
लेकिन पिछले दो हफ़्ते से अलगअलग स्थानों से बारिश की ख़बरें आ रही हैं
बारिश की खबरों के साथसाथ एक ताजगी का अहसास भी हो रहा है
आप भी अनुभव करते होंगे और जैसे वैज्ञानिक बता रहे हैं इस बार वर्षा अच्छी होगी सर्वदूर होगी और वर्षा ऋतु के पूरे कालखण्ड दरम्यान होगी
ये अपने आप में एक नया उत्साह भरने वाली ख़बरें हैं
मैं सभी किसान भाइयों को भी अच्छी वर्षा ऋतु की बहुतबहुत शुभकामनायें देता हूँ
हमारे देश में जैसे किसान मेहनत करता है हमारे वैज्ञानिक भी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत सफलताएँ प्राप्त कर रहे हैं
और मेरा तो पहले से मत रहा है कि हमारी नई पीढ़ी वैज्ञानिक बनने के सपने देखे विज्ञान में रूचि ले आने वाली पीढ़ियों के लिये कुछ कर गुजरने की इच्छा के साथ हमारी युवा पीढ़ी आगे आए
मैं आज और भी एक खुशी की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ
कल मैं पुणे गया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में वहाँ कार्यक्रम था और वहाँ मैंने पुणे के कॉलेज ओएफ इंजिनियरिंग के जिन विद्यार्थियों ने स्वयं की मेहनत से स्वयं उपग्रह बनाया और जिसे 22 जून को प्रक्षेपित किया गया उनको मिलने के लिए बुलाया था
क्योंकि मेरा मन करता था कि मैं इन मेरे युवा साथियों को देखूं तो सही उनको मिलूँ तो सही उनके भीतर जो ऊर्जा है उत्साह है उसका मैं भी तो अनुभव करूँ पिछले कई वर्षों से अनेक विद्यार्थियों ने इस काम में अपना योगदान दिया
ये एकेडमिक सैटेलाइट एक प्रकार से युवा भारत के हौसले की उड़ान का जीता जागता नमूना है
और ये हमारे छात्रों ने बनाया
इन छोटे से सैटेलाइट के पीछे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं
उसकी जो उड़ान है बहुत ऊँची है और उसकी जो मेहनत है वो बहुत गहरी है
जैसे पुणे के छात्रों ने किया वैसे ही तमिलनाडु चेन्नई की सत्यभामा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा भी एक सैटेलाइट बनाया गया और वो सत्यबामासात को भी प्रक्षेपित किया गया
हम तो बचपन से ये बातें सुनते आये हैं और हर बालक के मन में आसमान को छूने और कुछ तारों को मुठ्ठी में कैद करने की ख्वाहिश हमेशा रहती है और इस लिहाज़ से
एसआरओ द्वारा भेजे गये छात्रों के द्वारा बनाये हुए दोनों सैटेलाइट मेरी दृष्टि से बहुत अहम् हैं बेहद ख़ास हैं
ये सभी छात्र बधाई के पात्र हैं
मैं देशवासियों को भी बहुतबहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 22 जून को
एसआरओ के हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 20 सैटेलाइट अन्तरिक्ष में भेजकर अपने ही पुराने रेकॉर्डों को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया और ये भी खुशी की बात है कि भारत में ये जो 20 सैटेलाइट लॉन्च किये गए उसमें से 17 सैटेलाइट अन्य देशों के हैं
अमेरिका सहित कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने का काम भारत की धरती से भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ और इनके साथ वही दो सैटेलाइट जो हमारे छात्रों ने बनाये थे वे भी अन्तरिक्ष में पहुँचे
और ये भी विशेषता है कि इसरो ने कम लागत और सफलता की गारंटी के चलते दुनिया में ख़ास जगह बना ली है और उसके कारण विश्व के कई देश लॉन्चिंग के लिए आज भारत की तरफ़ नज़र कर रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बात अब भारत में जनजन के मन की बात बन गयी है
लेकिन कुछ घटनायें उसमें एक नई ज़िंदगी ले आती हैं नये प्राण भर देती हैं
इस बार 10वीं12वीं की परीक्षाओं के जो नतीजे आये हैं हमारी बेटियाँ मैदान मार रही हैं और गर्व होता है
और मेरे देशवासियों हम सब गर्व करें ऐसी एक और महत्वपूर्ण बात 18 जून को भारतीय वायु सेना में पहली बार फर्स्ट बैच ओएफ वूमेन फाइटर पाइलट्स इन थे इंडियन एयर फोर्स भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पाइलट की पहली बैच ये सुनते ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं न कितना गर्व होता है कि हमारे तीन फ्लाइंग आफिसर बेटियाँ अवनि चतुर्वेदी भावना कंठ और मोहना जिन्होंने हमें गौरव दिलाया है
इन तीन बेटियों की ख़ास बात है
फ्लाइंग आफिसर अवनि मध्य प्रदेश के रीवा से हैं फ्लाइंग आफिसर भावना बिहार में बेगूसराय से हैं और फ्लाइंग आफिसर मोहना गुजरात के बड़ोदरा से हैं
आपने देखा होगा कि तीनों बेटियाँ हिन्दुस्तान के मेट्रो शहर से नहीं हैं
वे अपनेअपने राज्यों की राजधानी से भी नहीं हैं
ये छोटे शहरों से होने के बावज़ूद भी इन्होंने आसमान जैसे ऊंचे सपने देखे और उसे पूरा करके दिखाया
मैं अवनि मोहना भावना इन तीनों बेटियों को और उनके माँबाप को भी ह्रदय से बहुतबहुत शुभकामनायें देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ दिन पूर्व पूरे विश्व ने 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की वर्षगाँठ पर भव्य कार्यक्रम किये
एक भारतीय के नाते पूरा विश्व जब योग से जुड़ता है तब हम अहसास करते हैं जैसे दुनिया हमारे कल आज और कल से जुड़ रही है
विश्व के साथ हमारा एक अनोखा नाता बन रहा है
भारत में भी एक लाख से अधिक स्थानों पर बहुत उमंग और उत्साह के साथ भांतिभांति के रंगरूप के साथ रंगारंग माहौल में अन्तर्राष्ट्रीय योगपर्व मनाया गया
मुझे भी चंडीगढ़ में हजारों योग प्रेमियों के साथ उनके बीच योग करने का अवसर मिला
आबालवृद्ध सबका उत्साह देखने लायक था
आपने देखा होगा पिछले सप्ताह भारत सरकार ने इस अन्तर्राष्ट्रीय योगपर्व के निमित्त ही सूर्य नमस्कार की डाक टिकट भी जारी की है
इस बार विश्व में योगा डे के साथसाथ दो चीज़ों पर लोगों का विशेष ध्यान गया
एक तो अमेरिका के न्यू यॉर्क शहर में जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के ऊपर योगासन की भिन्नभिन्न कृतियों का विशेष प्रोजेक्शन किया गया और वहाँ आतेजाते लोग उसकी फोटो लेते रहते थे और और दुनिया भर में वो फोटो प्रचलित हो गयी
ये बातें किस भारतीय को गौरव नहीं दिलाएँगी ये बताइये न और भी एक बात हुई टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है
सोशल मीडिया की अपनी एक पहचान बन गयी है और इस बार योग में ट्विटर ने योगा
मेजेस के साथ सेलिब्रेशन का एक हल्काफुल्का प्रयोग भी किया
हैशटैग योगा डे टाइप करते ही योगा वाले
मेजेस का चित्र हमारे मोबाइल फोन पर आ जाता था और दुनिया भर में वो प्रचलित हो गया
योग का मतलब ही होता है जोड़ना
योग में पूरे जगत को जोड़ने की ताक़त है
बस ज़रूरत है हम योग से जुड़ जाएँ
मध्य प्रदेश के सतना से स्वाति श्रीवास्तव ने इस योग दिवस के बाद मुझे एक टेलीफोन किया और उसने मुझे एक मेसेज दिया है आप सबके लिए लेकिन लगता है शायद वो ज़्यादा मेरे लिए है
मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा देश स्वस्थ रहे उसका ग़रीब व्यक्ति भी निरोग रहे
इसके लिए मैं चाहती हूँ कि दूरदर्शन में हर एक सीरियल के बीच में जो सारे एडीएस एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें से किसी एक एडी में योग के बारे में बताएँ
उसे कैसे करते हैं उसके क्या लाभ होते हैं स्वाति जी आपका सुझाव तो अच्छा है लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा न सिर्फ़ दूरदर्शन इन दिनों भारत और भारत बाहर टीवी मीडिया के जगत में प्रतिदिन योग के प्रचार में भारत के और दुनिया के सभी टीवी चैनल कोईनकोई अपना योगदान दे रही हैं
हर एक के अलगअलग समय हैं
लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगी तो योग के विषय में जानकारी पाने के लिए ये सब हो ही रहा है
और मैंने तो देखा है दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ चौबीसों घंटे योग को समर्पित चैनल भी चलती हैं
और आपको पता होगा कि मैं जून महीने में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस निमित्त प्रतिदिन ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से हर दिन एक नये आसन का वीडियो शेयर करता था
अगर आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जायेंगे तो 4045 मिनट का एककेबाद एक शरीर के भिन्नभिन्न अंगों के लिए किस प्रकार के योग कर सकते हैं हर आयु के लोग कर सकते हैं ऐसे सरल योगों का योग का एक अच्छा वीडियो वेबसाइट पर उपलब्ध है
मैं आपको भी और आपके माध्यम से सभी योग के जिज्ञासुओं को कहूँगा कि वे ज़रूर इसके साथ जुड़ें
मैंने इस बार एक आवाहन किया है कि जब हम कहते हैं कि योग रोग मुक्ति का माध्यम है तो क्यों न हम सब मिल कर के जितने भी स्कूल ओएफ थाउट्स हैं योग के सम्बन्ध में हर एक के अपनेअपने तरीके हैं हर एक के अपनेअपने प्रायोरिटीज हैं हर एक के अपने अलगअलग अनुभव हैं लेकिन सब का अंतिम लक्ष्य एक है
मैं इन जितने प्रकार के योग की विधायें चल रही हैं जितने प्रकार के योग के इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं जितने प्रकार के योग गुरु हैं सबसे मैंने आग्रह किया है कि क्या हम पूरा ये वर्ष मधुमेह के खिलाफ डायबीट्स के खिलाफ योग के द्वारा एक सफल अभियान चला सकते हैं क्या क्या योग से डायबीट्स को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ लोगों को उसमें सफलता मिली है
हरएक ने अपनेअपने तरीके से रास्ते खोजे हैं और हम जानते हैं कि डायबीट्स का वैसे कोई उपचार नहीं बताता है
दवाइयाँ ले कर के गुजारा करना पड़ता है और डायबीट्स ऐसा राजरोग है कि जो बाकी सब रोगों का यजमान बन जाता है
भांतिभांति बीमारियों का वो एंट्रेंस बन जाता है और इसलिए हर कोई डायबीट्स से बचना चाहता है
बहुत लोगों ने इस दिशा में काम भी किया है
कुछ डायबेटिक पेशेंट्स ने भी अपनी यौगिक प्रैक्टिस के द्वारा उसको नियंत्रित किया है
क्यों न हम अपने अनुभवों को लोगों के बीच शेयर करें
इसको एक मोमेंटम दें
साल भर एक माहौल बनाएँ
मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हैशटैग योगा फाइट्स डायबीट्स मैं फिर से कह देता हूँ हैशटैग योगा फाइट्स डायबीट्स को उसे कर अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करें या मुझे नरेंद्रमोदी App पर भेजें
देखें तो सही किस के क्या अनुभव हैं प्रयास तो करें
मैं आपको निमंत्रित करता हूँ हैशटैग योगा फाइट्स डायबीट्स पर अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए
मेरे प्यारे देशवासियो कभीकभी मेरे मन की बात की बड़ी मजाक भी उड़ाई जाती है बहुत आलोचना भी की जाती है लेकिन ये इसलिये संभव है क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं
लेकिन आज जब 26 जून मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब ख़ासकर के नई पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि जिस लोकतंत्र का हम गर्व करते हैं जिस लोकतंत्र ने हमें एक बहुत बड़ी ताकत दी है हर नागरिक को बड़ी ताकत दी है लेकिन 26 जून 1975 वो भी एक दिन था
25 जून की रात और 26 जून की सुबह हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक ऐसी काली रात थी कि भारत में आपातकाल लागू किया गया
नागरिकों के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया
देश को जेलखाना बना दिया गया
जयप्रकाश नारायण समेत देश के लाखों लोगों को हजारों नेताओं को अनेक संगठनों को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया
उस भयंकर काली घटना पर अनेक किताबें लिखी गई हैं
अनेक चर्चायें भी हुई हैं लेकिन आज जब मैं 26 जून को आपसे बात कर रहा हूँ तब इस बात को हम न भूलें कि हमारी ताकत लोकतंत्र है हमारी ताक़त लोकशक्ति है हमारी ताकत एकएक नागरिक है
इस प्रतिबद्धता को हमें आगे बढ़ाना है और ताकतवर बनाना है और भारत के लोगों की ये ताकत है कि उन्होंने लोकतंत्र को जी के दिखाया है
अखबारों पर ताले लगे हों रेडियो एक ही भाषा बोलता हो लेकिन दूसरी तरफ देश की जनता मौका पड़ते ही लोकतांत्रिक शक्तियों का परिचय करवा दे
ये बातें किसी देश के लिए बहुत बड़ी शक्ति का रूप हैं
भारत के सामान्य मानव की लोकतान्त्रिक शक्ति का उत्तम उदाहरण आपातकाल में प्रस्तुत हुआ है और लोकतान्त्रिक शक्ति का वो परिचय बारबार देश को याद कराते रहना चाहिए
लोगों की शक्ति का एहसास करते रहना चाहिए और लोगों की शक्ति को बल मिले इस प्रकार की हमारी हर प्रकार से प्रवृत्ति रहनी चाहिए और लोगों को जोड़ना चाहिए
मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि लोग वोटे करें और पाँच साल के लिए आपको देश चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दें
जी नहीं वोटे करना तो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण है लेकिन और भी बहुत सारे पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू है जनभागीदारी
जनता का मिजाज जनता की सोच और सरकारें जितनी जनता से ज्यादा जुड़ती हैं उतनी देश की ताकत ज्यादा बढ़ती है
जनता और सरकारों के बीच की खाई ने ही हमारी बर्बादी को बल दिया है
मेरी हमेशा कोशिश है कि जनभागीदारी से ही देश आगे बढ़ना चाहिए
अभीअभी जब मेरी सरकार के 2 साल पूरे हुए तो कुछ आधुनिक विचार वाले नौजवानों ने मुझे सुझाव दिया कि आप इतनी बड़ी लोकतंत्र की बातें करते हैं तो क्यों न आप अपनी सरकार का मूल्यांकन लोगों से करवाएँ
वैसे एक प्रकार से उनका चुनौती का ही स्वर था सुझाव का भी स्वर था
लेकिन उन्होंने मेरे मन को झकझोर दिया
मैंने कुछ अपने वरिष्ठ साथियों के बीच में ये विषय रखा तो प्रथम प्रतिक्रिया तो रिएक्शन ऐसा ही था कि नहींनहीं जी साहब ये आप क्या करने जा रहे हो आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि अगर कोई इकट्ठे हो जाये कोई गुट बन जाये और टेक्नोलॉजी का दुरूपयोग कर गये तो पता नहीं सर्वे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे
उन्होंने चिंता जाहिर की
लेकिन मुझे लगा नहींनहीं रिस्क लेना चाहिए कोशिश करनी चाहिए
देखें क्या होता है और मेरे प्यारे देशवासियो खुशी की बात है कि जब मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलगअलग भाषाओं का उपयोग करते हुए जनता को मेरी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए आवाहन किया
चुनाव के बाद भी तो बहुत सर्वे होते हैं चुनाव के दरम्यान भी सर्वे होते हैं कभीकभी बीच में कुछ इश्यूज पर भी सर्वे होते हैं लोकप्रियता पर सर्वे होते हैं लेकिन उसकी सैंपल साइज ज्यादा नहीं होती है
आप में से बहुत लोगों ने रते माय GovernmentMyGovइन पर अपना ओपिनियन दिया है
वैसे तो लाखों लोगों ने इसमें रूचि दिखाई लेकिन 3 लाख लोगों ने एकएक सवाल का जवाब देने के लिए मेहनत की है काफी समय निकाला है
मैं उन 3 लाख लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने स्वयं सक्रियता दिखाई सरकार का मूल्यांकन किया
मैं नतीजों की चर्चा नहीं करता हूँ वो हमारे मीडिया के लोग जरूर करेंगे
लेकिन एक अच्छा प्रयोग था इतना तो मैं जरूर कहूँगा और मेरे लिए भी खुशी की बात थी कि हिंदुस्तान की सभी भाषाएँ बोलने वाले हर कोने में रहने वाले हर प्रकार के बैकग्राउंड वाले लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और सबसे बड़ी मेरे लिए अचरज़ तो है ही है कि भारत सरकार की जो ग्रामीण रोजगार की योजना चलती है उस योजना की जो वेबसाइट है उस पोर्टल पर सब से ज्यादा लोगों ने बढ़चढ़ कर के हिस्सा लिया
इसका मतलब कि ग्रामीण जीवन से जुड़े गरीबी से जुड़े हुए लोगों का इसमें बहुत बड़ा सक्रिय योगदान था ऐसा मैं प्राथमिक अनुमान लगाता हूँ
ये मुझे और ज्यादा अच्छा लगा
तो आपने देखा एक वो भी दिन था जब कुछ वर्ष पहले 26 जून को जनता की आवाज दबोच दी गई थी और ये भी वक्त है कि जब जनता खुद तय करती है बीचबचाव तय करती है कि देखें तो सही सरकार ठीक कर रही है कि गलत कर रही है अच्छा कर रही है बुरा कर रही है
यही तो लोकतंत्र की ताकत है
मेरे प्यारे देशवासियो आज मैं एक बात के लिए विशेष आग्रह करना चाहता हूँ
एक ज़माना था जब टैक्सों इतने व्यापक हुआ करते थे कि टैक्स में चोरी करना स्वभाव बन गया था
एक ज़माना था विदेश की चीज़ों को लाने के सम्बन्ध में कई रिस्ट्रिक्शन थे तो स्मगलिंग भी उतना ही बढ़ जाता था लेकिन धीरेधीरे वक्त बदलता गया है
अब करदाता को सरकार की करव्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं
एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है
मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि नियमों से भाग कर के हम अपने सुखचैन गवाँ देते हैं
कोई भी छोटामोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है
हम ऐसा क्यों होने दें क्यों न हम स्वयं अपनी आय के सम्बन्ध में अपनी संपत्ति के सम्बन्ध में सरकार को अपना सहीसही ब्यौरा दे दें
एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए
इस बोझ से मुक्त होने के लिए मैं देशवासियो को आग्रह करता हूँ
जिन लोगों के पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है अघोषित आय है उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कीजिये
सरकार ने 30 सितम्बर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है
जुर्माना देकर के हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं
मैंने ये भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपने मिल्कियत के सम्बन्ध में अघोषित आय के सम्बन्ध में सरकार को अपनी जानकारी दे देंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी
इतना धन कहाँ से आया कैसे आया एक बार भी पूछा नहीं जाएगा और इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा मौका है कि आप एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए
साथसाथ मैं देशवासियों को कहना भी चाहता हूँ कि 30 सितम्बर तक की ये योजना है इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए
मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितम्बर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ़ हो जो सरकारी नियमों से जुड़ना नही चाहता है तो उनकी कोई मदद नही हो सकेगी
मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि हम 30 सितम्बर के बाद ऐसा कुछ भी ना हो जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो इसलिए भी मैं कहता हूँ अच्छा होगा 30 सितम्बर के पहले आप इस व्यवस्था का लाभ उठाएँ और 30 सितम्बर के बाद संभावित तकलीफों से अपनेआप को बचा लें
मेरे देशवासियो आज ये बात मुझे मन की बात में इसलिए करनी पड़ी कि अभी मैंने हमारे जो रेवेन्यू विभाग इनकम टैक्स कस्टम एक्साइज उनके सभी अधिकारियों के साथ मैंने एक दोदिन का ज्ञानसंगम किया बहुत विचारविमर्श किया और मैंने उनको साफसाफ शब्दो में कहा है कि हम नागरिकों को चोर न मानें
हम नागरिकों पर भरोसा करें विश्वास करें हैंडहोल्डिंग करें
अगर वे नियमों से जुड़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करके प्यार से साथ में ले आएँ
एक विश्वास का माहौल पैदा करना आवश्यक है
हमारे आचरण से हमें बदलाव लाना होगा
टैक्सपेयर को विश्वास दिलाना होगा
मैंने बहुत आग्रह से इन बातों को उनसे कहा है और मैं देख रहा था कि उनको भी लग रहा है कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो हम सबने योगदान देना चाहिए
और इस ज्ञानसंगम में जब मैं जानकारियाँ ले रहा था तो एक जानकारी मैं आपको भी बताना चाहता हूँ
आप में से कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि सवासौ करोड़ के देश में सिर्फ और सिर्फ डेढ़ लाख लोग ही ऐसे हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम पचास लाख रूपये से ज्यादा है
ये बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है
पचास लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम वाले लोग बड़ेबड़े शहरो में लाखों की तादाद मे दिखते हैं
एकएक करोड़ दोदो करोड़ के बंगालो देखते ही पता चलता है कि ये कैसे पचास लाख से कम आय के दायरे में हो सकते हैं
इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस स्थिति को बदलना है और 30 सितम्बर के पहले बदलना है
सरकार को कोई कठोर कदम उठाने से पहले जनताजनार्दन को अवसर देना चाहिए और इसलिए मेरे प्यारे भाइयोबहनो अघोषित आय को घोषित करने का एक स्वर्णिम अवसर है
दूसरे प्रकार से 30 सितम्बर के बाद होने वाले संकटों से मुक्ति का एक मार्ग है
मैं देश की भलाई के लिये देश के गरीबों के कल्याण के लिये आपको इस काम में आने के लिए आग्रह करता हूँ और मैं नही चाहता हूँ कि 30 सितम्बर के बाद आपको कोई तकलीफ़ हो
मेरे प्यारे देशवासियो इस देश का सामान्य मानव देश के लिए बहुतकुछ करने के लिए अवसर खोजता रहता है
जब मैंने लोगों से कहा रसोई गैस की सबसिडी छोड़ दीजिये इस देश के एक करोड़ से ज्यादा परिवारों ने स्वेच्छा से सबसिडी छोड़ दी
मैं खास करके जिनके पास अघोषित आय है उनके लिए एक खास उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ
मैं कल स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम के निमित्त पुणे जब गया था तो वहाँ मुझे श्रीमान चन्द्रकान्त दामोदर कुलकर्णी और उनके परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य मिला
मैंने उनको खास मिलने के लिए बुलाया था और कारण क्या है जिसने कभी भी कर चोरी की होगी उनको मेरी बात शायद प्रेरणा दे या ना दे लेकिन श्रीमान चन्द्रकान्त कुलकर्णी की बात तो ज़रूर प्रेरणा देगी
आप जानते हैं क्या कारण है ये चन्द्रकान्त कुलकर्णी जी एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं
सरकार में नौकरी करते थे रिटायर हो गए 16 हजार रुपया उनको पेंशन मिलती है
और मेरे प्यारे देशवासियो आपको ताज्जुब होगा और जो करचोरी करने की आदत रखते हैं उनको तो बड़ा सदमा लगेगा कि ये चन्द्रकान्त जी कुलकर्णी हैं जिन्हें सिर्फ 16 हजार रूपये का पेंशन मिलता है लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और कहा था कि मैं मेरे 16 हजार रुपये के पेंशन में से हर महीने 5 हजार रुपया स्वच्छता अभियान के लिए डोनेट करना चाहता हूँ और इतना ही नहीं उन्होंने मुझे 52 चेक फिफ्टी त्वो चेक पोस्टडेटेड जो कि हर महीना एकएक चेक की डेट है चेक भेज दिए हैं
जिस देश का एक सरकारी मुलाज़िम निवृत्ति के बाद सिर्फ 16 हजार के पेंशन में से 5 हजार रुपया स्वच्छता के अभियान के लिए दे देता हो इस देश में कर चोरी करने का हमें हक़ नहीं बनता है
चन्द्रकान्त कुलकर्णी से बड़ा कोई हमारी प्रेरणा का कारण नहीं हो सकता है
और स्वच्छता अभियान से जुड़े हुये लोगों के लिए भी चन्द्रकान्त कुलकर्णी से बड़ा उत्तम उदाहरण नहीं हो सकता है
मैंने चन्द्रकान्त जी को रूबरू बुलाया उनसे मिला मेरे मन को उनका जीवन छू गया
उस परिवार को मैं बधाई देता हूँ और ऐसे तो अनगिनत लोग होंगे शायद हो सकता है मेरे पास उनकी जानकारी न हो लेकिन यही तो लोग हैं यही तो लोकशक्ति है यही तो ताकत है
16 हजार की पेंशन वाला व्यक्ति दो लाख साठ हजार के चेक एडवांस में मुझे भेज दे क्या ये छोटी बात है क्या आओ हम भी अपने मन को जरा टटोलें हम भी सोचें कि सरकार ने हमारी आय को घोषित करने के लिये अवसर दिया है हम भी चन्द्रकान्त जी को याद करके हम भी जुड़ जाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो उत्तराखण्ड के पौड़ी गढ़वाल से संतोष नेगी जी ने फोन करके अपना एक अनुभव शेयर किया है
जल संचय की बात पर उन्होंने मुझे संदेश दिया है
उनका ये अनुभव देशवासियो आपको भी काम आ सकता है
हमने आपकी प्रेरणा से अपने विद्यालय में वर्षा जल ऋतु शुरू होने से पहले ही 4 फीट के छोटेछोटे ढाईसौ गड्ढे खेल के मैदान के किनारेकिनारे बना दिए थे ताकि वर्षा जल उसमें समा सके
इस प्रक्रिया में खेल का मैदान भी खराब नहीं हुआ बच्चों के डूबने का खतरा भी नहीं हुआ और करोड़ों लीटर पानी मैदान का हमने वर्षा जल सब बचाया है
संतोष जी मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ कि आपने मुझे ये संदेश दिया और पौड़ी गढ़वाल पहाड़ी इलाका और वहाँ भी आपने काम किया आप बधाई के पात्र हैं
और मुझे विश्वास है कि देशवासी भी बारिश का तो मज़ा ज़रूर लें लेकिन ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है ये अपरंपार संपत्ति है
एकएक बूँद जल का बचाने के लिये हम कुछनकुछ प्रयास करें
गाँव का पानी गाँव में शहर का पानी शहर में हम कैसे रोक लें ये पृथ्वी माता को फिर से एक बार रिचार्ज करने के लिये हम उस पानी को फिर से जमीन में वापस कैसे भेजें जल है तभी तो कल है जल ही तो जीवन का आधार है
पूरे देश में एक माहौल तो बना है पिछले दिनों हर राज्य में जल संचय के अनेक प्रकल्प किये हैं
लेकिन अब जब जल आया है तो देखिये कहीं चला तो न जाये
जितनी चिंता जीवन को बचाने की है उतनी ही चिंता जल बचाने की होनी चाहिये
मेरे प्यारे देशवासियो आप तो जानते हैं उन्नीस सौ बाईस नम्बर अब तो आपके याददाश्त का हिस्सा बन गया है
ओने नाइन त्वो त्वो उन्नीस सौ बाईस
ये उन्नीस सौ बाईस ऐसा नंबर है जिस पर अगर आप मिस्ड कॉल करें तो आप मन की बात को अपनी पसंदगी की भाषा में सुन सकते हैं
अपने समय के अनुसार अपनी भाषा में मन की बात सुन करके देश की विकास यात्रा में योगदान देने का आप भी मन बना लें
सभी देशवासियो को बहुतबहुत नमस्कार